बानाना सेब ऑरेंजेस और ब्लैक ग्रेपस

ऊपर जो हैआसमान आसमान दिख रहा हैसफेद सफेद बादल

ऊपर जो आसमान दिख रहा है और तीन एक नाव दिख रही --

अ येलो कलर की पट्टियाँ बनी हुई है ऊपर से आसमान दिख रहा है एक मल्टी बिल्डिंग बनी हुई दिख रही है।

दो तीन जगह बच्चे दिख रहे हैं। एक नाव दिख रही है जिसमें सभी लोग --